यह एक शायद नाश्ते की फोटो है।

फोटो किसी खेत की लग रही है।

शायद यहां पर बहुत सारे लोग पेट्रोल डलवाना चाहते हैं।

लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है।

यह तस्वीर बहुत ही आकर्षक दिख रही है।

शायद यह किसी पुराने राजा--

ई सुंदर और आकर्षित दिख रही हैं।

जहां पर बहुत सारी गाड़ियां आती है और अपना टोल पे करती है।

यह तस्वीर बहुत ही आकर्षक लग रही है।

कंपाउंड या किसी ऑफिस की हो सकती है।

यह शायद किसी कंप्यूटर की दुकान की तस्वीर है।

यहां पर लोग शादी की तैयारियां करते होंगे शायद।

किसी आदमी या महिला ने अपनी छत से यह तस्वीर खिंची है।

इसमें वह बाजार को दिखाने की कोशिश कर रहा है।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

इस तस्वीर को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह तस्वीर--

इस तस्वीर को देखने से यह प्रतित--